यह कोई गोर्मेंट स्कूल या गोर्मेंट कॉलेज जैसी कोई फोटो दिखा रखी है।

ये किसी जिम की फोटो इन्होंने दिखा रखी है।

अह ये सभी मैट के ऊपर योगा पोजिशन में खड़े हुए हैं और ट्रेनर एक--

इसमें कुछ पकड़े शो पीस के लिए भी लगा रखी हैं ऊपर एक टी शर्ट है।

जो बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखी हैं उसके ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा रखा है।

ये एक हाईवे जैसी कोई फोटो है।

जिसमें बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

और पीछे दूसरी साइड बहोत सारे शॉप जैसे भी कुछ है।

जिसके बाहर एक ऑटो दो तीन ऑटो लगी हुई है।

के ऊपर एक मछुवारा हैं जो अपनी बोट के साथ--

कोई ये डेली मार्केट है जिसे ऊपर डेली यूज का सामान मिलता हुआ--

बाउंड्रीज पे घोड़ों की बहोत सारी फोटोज हैं और इसमें दो घोड़े भी हैं जिनके सा--

जिसके ऊपर प्लॉट्स विलास प्लॉट्स कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कुछ डिटेल्स दे रखी हैं और ये एक ट्रक खड़ा है।

एक आर_ओ भी लगा रखा है वॉश बेसिन के ऊपर--

और सभी ने एक पोजीसन पे एक्सरसाइज शुरु कर रखी है।

का कुछ बना रखा है और एक बड़ा सा पेड़ भी है।

ये कोई ऑफिस की फोटो है।

और इसी की साइड में कोई ठेला जैसा कुछ लगा रखा है।

ये किसी के घर के बाहर की फोटो है।

जिसमें दूर दूर तक बस पे पहाड़ और पेड़ ही दिखाई दे--